और बहुत सारे पेड़ भी हैं।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

बहोत मनुष्य भी दिख रहे हैं।

इसमे बीच में बहुत बड़ा मूर्ति दिख रहा है।

बहुत सारे पेड़ भी है।

इसमें एक बोतल भी रखा हुआ है।

बहोत सारे पेड़ भी हैं।

एक आदमी ने काला रंग का कपड़ा पहना है।

ये एक रस्ते की फोटो है।

ये एक मंदिर की गेट की पिक्चर है।

जिसपे एक बोर्ड में लिखा हुआ है वेलकम टू मां कामाख्या देवालया।

और एक मनुष्य हाथ में हेलमेट लेके खड़ा हुआ है।

बहुत सारे पेड़ भी है।

कुछ छोटे मोटे दुकान भी दिख रहे हैं।

और एक रिक्शा भी दिख रहा है।

बहुत सारे पेड़ भी हैं।

बीच में एक मूर्ति भी नजर आ रहा है।

टेबल पे बोतल भी रखा हुआ है।

ऑरेंज और ब्ल्यू कलर का सोफा है।

और उसके ऊपर एक बोर्ड भी रखा हुआ है और पीछे एक खिड़की दिख रहा है जिसपे पर्दा लगा हुआ है।

एक बैनर में ज्ञान विका भी लिखा हुआ है।

ये एक जूते चप्पल की शोरूम है।